जो कि पुल में से गाड़ी बहुत सारे आ रहे हैं और कुछ गाड़ी जा भी रहे हैं।

जो की दुकान का नाम यहां पर लिखा हुआ है पिकनिक स्पॉट्स बहुत सारे --

जर्सी और पैंट टंगे हुए हैं और अंदर की तरफ दो लोग भी है अंदर --

ऊपर में लाइट्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं।

और उधर घर भी है बड़े - बड़े और इधर साइड में पेड़ भी बहुत सारे उधर इधर ईट रखे हुए है साइड्‌ बहुत सारे ।

और इधर भी एक पेड़ है बहुत सारे पेड़ है यहां पर।

और यहां पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर है इस पत्थर में शायद पूजा होती है।

क्योंकि मूर्ति ऊपर लाइट भी लगे हुए हैं बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं और यहां पर बहुत सारे--

और उधर एक साइड में लंबा सा बड़ा सा पेड़ है और निचे भी बहुत छोटे-छोटे पेड़ है।